ओर पूरी जगह जो है वहां पे दूर जगह पे लेडिस और जेन्ट्स काफी खड़े हुए हैं ।

एक वॉल है वॉल मे एक छोटी सी खिड़की है उसका काफी होल की गई है रेड कलर की कलर की गई है और वॉल मे ऑरेंज कलर किया गया है और साथ ही सामने में एक पोस्टर्स है पोस्टर मे काफी चीज लिखी हुई है ।

यह काफी पुरानी उसमे एक पोस्टर भी लगा हुआ है रेड पोस्टर सामने बड़ी सी रास्ता गई हे पूरी खाली है रास्ता।

एक रेड कलर डाक पोस्ट भी रखा हुआ है एक लेलटेन है टंग खड़ी हुई लेलटेन मे भी दो पोस्टर लगी हुई है ओर साथी साथ पूरा जो धूल लगे पे कुछ कुछ जगह पे गाच भी लगी हुई है।

रोड में काफी सारे कचरा और पत्थर गिरे हुये है साइड में एक के साइड में एक बिल्डिंग है रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में बॉर्डर दिया गया है उसमे वहां पर पिलर भी दी गयी है लोहे की।

एक बडा स प्लेट है जहाँ पे रेड कलर से कलर किया गया है और सामने में कवर किया गया है ब्लू कलर का चाल दिया गया है।

अच्छे से डेकोरेट की गइ है ऊपर की तरफ झालर है पिंक वाईट में कपड़े से डेकोरेट किया गया है ब्लेक कलर का डोर है बहुत आदमी और औरत खड़ी हुई है और नीचे ग्रीन कलर के कारपेट भी बिछाई गई है डोर का जो कलर है वो मरून और यल्लो कलर किया गया है।

मैदान निचे की जो मैदान है गार्ड है वो पूरी तरह से ग्रीन है और ये आसमान पुरे काले और अंधरे में ढंके हुए है।

बुक लिए आदमी खड़े है उन्होंने ब्लू और वाईट टीशर्ट पहने उनका हेर का कलर वाईट है हाथ में धड़ी है ब्लू कलर शर्ट का पह पेन्ट पहना हुआ है उन्होंने --

बेठी हुयी है घूँघट में काफी सारी आंचल डी हुई है उन्होंने सिद्न्हुर लगाए हुआ है ओरेंज कलर का बहुत सारे रंग बिरंग की साड़ियां पहनी हुई है उन्होंने।